यहाँ पर एक लड़का खड़ा है वो टोपी पहना हुआ है और एक लड़का खड़ा है जो साइकिल के पास में खड़ा हुआ है वो भी हाथ में --

यहां पर पोस्ट जमा करते हैं एवं पोस्ट मिलते भी हैं यहां पर एक पोस्ट पियोन रहता है वह पोस्ट को ले जाके पहुंचाते हैं।

की मूरत है यह मां दुर्गा शेर पर बैठी हुई है यह महिषासुर को मार रही है यहाँ पर और सारे मूरत भी --

यह केक काफी सुन्दर है इस केक में बहुत तरह के सामान मिलाए गए यह केक एवं बर्थडे में काटा जाता --

यह केक खाने में काफी स्वादिष्ट है। इसे बच्चे बड़े प्यार से --